कलर रेड रेड है और व्हाइट फर्श --

एक कुत्ते का स्टेचू दिखाई दे रहा है और एक रियल कुत्ता दिखाई दे रहा है और --

और ऊपर शीशे लगे हुए हैं बिल्डिंग जैसा बना हुआ है।

बिल्डिंग में तीन तीन ऐसी लगे हुए हैं।

कुछ बच्चे स्कूल में स्टूल पर--

ये रैकों में व्हाइट और नीले रेड --

छिपी हुई हैं दिन का समय--

एक सपा सेंटर या ब्यूटी पार्लर की दुकान दिखाई दे रही है जिसपे काउंटर पर--

और स्विमिंग पूल इसमें कुछ बच्चे नहा रहे हैं और इसके पीछे एक--

स्टोर पे खड़े हुए हैं जो दवाई ले रहे हैं।

पार्क में एक बहुत बड़ा--

और कुछ नीले कलर की बैटरी दिखाई दे री हैं।